यह एक स्टेडियम है जो बंद हो चुका है यहां पर बहुत सारी घासे उग चुकी हैं

यह कार का शोरूम है जो ब्लैक कलर का है।